और मूर्ति के ऊपर मुकट भी रखे हुए हैं और हाथ में कुछ लिए हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पे हमें बहुत भीड़ दिखाई दे रहे हैं और इसमें --

का पोस्टर भी टंगा हुआ है उसमें दो दुकान दिख रहे हैं और वहां पे --

छोड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर कोई नहीं है।